एक बड़ा-सा किराना इ स्टस स्टोर जिस स्टोर में हर सामग्री पायी जाती हैं।

एक सामने स्टोर है और स्टोर के बगल में एक ए ऐ ऐ एयरटेल हम्म फोर जी ई का अ सेंटर है।

एक कार बना कार बना कार एजेंसी है जिस एजेंसी में एक लड़का कार बना रहा है और अगल बगल भी कुछ गाड़े का कारे गा-गाड़ियाँ खड़ी है।

एक बंधन बैंक है जिसमें कांच लगा हुआ है सामने एक छतरी लगी हुई है और गाड़ियां है जिसमें रखी हुई है और एक आदमी ए बैठा--

पूजा का सामान भी रखा है कटोरी ए घंटी और दिया जल रहा है।

एक फल का ठेला है जिसमे कुछ संतरे और ये खीरे ये रखे हुए है और भी ये बहुत से ए हर प्रकार के सब्जियां भी रखी हुईं है।